जो वॉल है रेड रेड वॉल है जो उसके साथ ग्रीन ट्रीस लगे हुए हैं।

और हेयर सैलून में सैलून की स्पेलिंग मिस्टेक हैं इसके अंदर और दिखा रहा इसमें काफी इसको जूम करके फोटो को लिया गया--

दो क्रेन लगी हुई है और क्रेन से वो बोर कर रहे हैं और कुछ लोग वहां पर खड़े हुए मैप लेके उसको देख रहे हैं कि यहां पे--

और बैक साइड पे एक उन्होंने रेड कलर की जो डेकोरेशन के फ्लावर पे एक डी टाइप बनाया हुआ है।

बिल्डिंग लग रही है जैसे कि कोई सेंट्रल टाइप लग रही है हमारे को ये बिल्डिंग ।

तो यह जो झूले लगे हुए हैं। ये जो झूले लग रहे हैं और यह जो गार्डन है ना यहां पे प्रॉपर नीट एंड क्लीन नहीं है। साफ सुथरा नहीं है यहां पे गार्डन में कहीं मिट्टी पड़ी हुई है कहीं घास है।

वाइट पानी की टंकी नजर आ रही है और इसके बाहर एक रेड कलर की गाड़ी पार्क की हुई है।